सामने कुछ सजा हुआ घर दिख रहा है।

और यहाँ पर बहुत सारा पानी भी है और आसमान ब्लू है और सामने बहुत सारे पेड़ हैं ।

और बगल में बहुत सा एक बड़ा सा पेड़ है।

एक हरे कलर का है कचरा वाला गाड़ी।

बहुत सारे कुछ लिख भी रहे हैं।

एकठो बाइक हो गया कार है सामने दू लोग।

के साइड साइड में बॉर्डर दिए हुए हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है।

यह एक बड़ा सा मस्जिद दिख रहा है ऊपर में बहुत बड़े-बड़े है।

यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक लाइट है सामने बिल्डिंग --

दो-तीन दुकान हैं दुकान के आगे बहुत सारे काफी कपड़े टांगे हुए हैं और बगल में पानी का टैंक रखा हुआ है।

यह एक समुन्द्र के किनारे यहाँ बड़े-बड़े दो पत्थर हैं घास फुस रखे हुआ है और बहुत --

यहाँ पे बहुत बड़ा घर है ऊपर एक आदमी खड़ा है।

शॉप है यहां पर तो एक काउंटर है।